में पानी का गिलास भी दिखाई दे रहा है मुझे एक प्लेट दिखाई दे रही है जिसमे डिश है मुझे हरे कलर की कुर्सी व सोफ़े भी दिखाई दे रहे है ।

मुझे सामने एक बड़ा अंटेना दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे छोटे सिड्डी भी दिखाई दे रही है।

मुझे पानी की टंकिया भी दिखाई दे रही हैं बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं है मुझे कुछ रौशनदान भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक ताला भी दिखाई दे रहा है जैसा की मैं देख पाया हूं मुझे कुछ ब्रेडस के पैकेट दिखाई दे रहे हैं कुछ जूस भी दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं देख पाया हूं मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी में मुझे कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं कुछ लेडिज दिखाई दे रही है जो किनारे में है।

रखा हुआ है ‌ रखें हुए हैं मुझे बिजली का स्वीच भी दिखाई दे रहा है और कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

जैसे कि मैं देख पाया हूं मुझे कुछ फूल सजे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे सोफे दिखाई दे रहे हैं जिनमें ब्लैक कलर की सीट है मुझे कुछ चद्दर भी दिखाई दे रही है --

साइकल दिखाई दे रही हैं जिसके आगे आइपॉड रखा हुआ है एक रेड कलर की चेयर दिखाई दे रही है मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मुझे एक लोहे के गेट नजर आ रहा है मुझे बिजली का एक प्लग नजर आ रहा है मुझे एक चेयर भी नजर आ रही है।

जैसा कि मैं देख पाया हूं यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है मुझे कुछ कंटीली झाड़ियां भी दिखाई दे रही है कु --

वे जीन्स में जैकेट पहनी हुई है मुझे कुछ साइकल्स भी दिखाई दे रही है व कुछ कार्टून्स भी दिखाई दे रहे है मुझे बड़ा टायर व नली भी दिखाई दे रहे है --

मुझे काफी सारी शॉप्स नीचे भी दिखाई दे रही है मुझे पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है मुझे कुछ अम्ब्रेला भी दिखाई दे रहे है ब्लैक --

मुझे छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं में टीले दिखाई दे रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मुझे कुछ--

गुब्बारे दिखाई दे रहे है मुझे पंखे भी दिखाई दे रहे है मुझे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझ --

मुझे एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर मुझे कुछ व्हाइट कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

बे नैट लगा हुआ है मुझे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है मुझे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जो हाथ में रैके पकड़े हुए है म --

जैसे की मैं देख पाया हूँ मुझे एक चाय की टपरी दिखाई दे रही है जिस--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

घास पर मुझे छोटी छोटी कंक्रीट दिखाई दे रही है व कुछ जीप दिखाई दे रही है मुझे सामने ब्लैक प --

मुझे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है मुझे इन डेक्स में रखे हुए कुछ टंगे हुए बैग्स भी दिखाई दे रहे है मुझे कुछ --

डकि‍ल में मुझे काफी सारे फल फ्रूट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं वैसे मुझे सेब भी दिखाई दे रहे हैं कलींदा भी दिखाई दे रहा हैं मुझे कुछ अमरुद भी दिखाई दे रहे हैं --

जैसे कि मैं देख पा हूं मुझे तराजू भी दिखाई दे रहा है मुझे ब्लैक पन्नी भी दिखाई दे रही है मुझे कुछ कैरेट्स भी दिखाई दे रहे है।

जो एक लोहे की रेल में रखे हुए हैं वेह ऑरेंज कलर की है मुझे कुछ छोटे टायर्स दिखाई दे रहे हैं व कुछ मध्यम टायर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे लोहे के बम्बू भी दिखाई दे रहे है मुझे कुछ व्यक्ति खड़े हुए बैठे हुए भी दिखाई दे रहे है मैं मुझे सामने भी कुछ --